उसपे सिल्वर कलर की नक्काशी की हुई है पीछे वॉल पे भी नक्काशी किया हुआ है।

ये एक कारखाना दिख रहा है सामने एक-- दो कर्मचारी दिख रहे हैं।

यह बहुत ही गहरी दिख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

इन लोगों के मेज पर चार्ट पेपर टेप केंची सब लग रहा है ये लोग कुछ बना रहे है।